अ और लाल गेंदे का जिसमें मंदिर को सजाने का काम चल रहा है और यह बहुत ही सुंदर नजारा भी है मंदिर के--

और टमाटर के छोटे-छोटे बहुत सारे फल पड़े हुए हैं और ये एक ठेली की ठेली है जिस पर सब्जी बिकती है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है और इस पेट्रोल पंप पे दो बाइक खड़ी है जिस पर लोग बैठे हुए हैं और ---

ये एक गांव का नजारा है जिसमें एक लैपटॉप पड़ा हुआ है उसके सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ है और सामने सैलून का दुकान है।

है जिसमें एक पुरुष डांस कर रहा है ।

और आर्टिफिशियल फूलों से भजाया गया है जिसमें माता रानी को भोग लगा है।

और हा लाल और पीले कलर का गेंदे के फूल से सजावट की गई है इनमें माता रानी की।

ये जो है सो एक अमूल का पार्लर जिसकी ओपनिंग हुई है और इसमें पिज्जा उज्जा भी मिलता है और ये--

पर्दा है सो ब्लू उ ऑरेंज कलर का है और इसमें वाइट कलर की पट्टी है और बगल में एक चेयर रखा हुआ है और सामने गेट है इसमें तीन चार्जिंग प्लग है।

कपड़ा बिकता है और इसमें बहोत सारी चेयर लगा हुआ है और इसमें--

मिलती है बस के यात्रियों को जिसमे पंखा लगा हुआ है और ये ----

ये जो है शो कपड़ा का शोरूम है जिसमें बहोत सारी साड़ी और कपड़े बॉक्स भी कर के रखे हुए और बहोत सारे कपड़े जो है--

से दिखवाने के लिए और इसका नाम राज्य स्वस्थ एवं परिवार कल्याण पटना योजना है।

इसमें कोई पेंट नहीं है और यहां पे दो लेबर काम कर रहे हैं।

ये जो है सो एक हॉस्पिटल का फीमेल जनरल वार्ड है जिसमे एक सामने बेड लगा हुआ है डो दो विंडो है और एक गेट लगा हुआ है जिस पर --

फ़ूलो और प्लास्टिक के बैलून से सजाया गया है और सामने यहां पे दो लोग भाषण दे रहे हैं।